ये आज कल आम युवाओं के लिए बहोत ही--

आम सा ट्रेंड चल चुका है और सेल्फी कोई भी ले सकता है बस उसके पास एक बढ़िया सी कैमरा वाली फोन होनी चाहिए सेल्फी हम सब ले सकते हैं।

यहां पास हमारे सामने पिक्चर में है आस्था डिपार्टमेंटल स्टोर जो कि शिमला--

को बहुत ज्यादा दिलों से बहुत ज्यादा भावस पूर्ण श्रद्धा से लोग आते हैं और अपना वक्त--

लोगों को अपनी ओर खींचता है ये एक शिव मन--

उनके ईश्वर के चोली फैलाने--

इन होटल में लोग आना और जाना पसंद करते है।

हम है एक दूसरे से मिलजुलके रहने का नाम है।

मला लोगों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र बना हु--

बड़े-बड़े चेयर्स लकड़ी के काम क्योंकि ठंड जगह में लकड़ियों के काम ज्यादा किए जाते हैं।

गवर्नमेंट के द्वारा इस जानवरों को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई गई है।

गर्म कपड़ों में रहना पसंद करते हैं लोगों को यहां घरों में आग के सामने बैठना भी बहुत पसंद है।

एक तरफ वो खाने का लुत्फ उठाते हैं दूसरी तरफ नेचर से रूबर--